सामान भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।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

और प्लेन भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है प्लेन में सीढियां भी लगी हुई दिखाई--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

यहाँ पर एक खंबा भीं दिखाई दे रहा हैं।

दे रहे हैं यहां पर मट्टी पल--

मेरे सामने एक शॉप नजर आ रही है शॉप में बहुत सारा समान दिखाई दे रहा है।

चॉप की दीवार व्हाईट कलर की दिखाई दे रहीं हैं शॉप में बहुत सारे कप भी रखें हुए दिखाई दे रहें हैं शॉप में बहुत सारी गुड़िया भीं रखीं हुई दिखाई दे रहीं हैं।

हमे नजर आ रहा है। यहां पर नरेश धरम स्टोर भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे बोर्ड भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी लाइट भी दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारे शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे तार भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

और एक मीटर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर लोहे का गैट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही--

यहां पर गॉगलो के साथ कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक शॉप नजर आ रही है शॉप में बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।